जिसके ऊपर त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेज विज्ञापन लगा हुआ है।

इस तस्वीर में एक शॉपिंग मॉल के अंदर एक कपड़ों की दूकान का दृश्य दिखया गया है जिसमे बहोत सारे लोग खरीदारी करने आऐ हैं।

एक व्यक्ति जिसने लाल रंग का टोपी पहनी है और हाथ में लाल रंग की टोकरियाँ पकड़े हुई है वह टोकरियों मे कपड़े रख कर ले जा रहा है |

इस तस्वीर मे एक चिड़िया घर दिखाया गया है जहाँ पे उसका उस भाग का को दृश्यांकित किया गया है जहाँ पे एक भालू को रखा गया है |

इसके अलावा उसके दाएं और कुछ खम्बे लगे हैं और हल्का फुल्का कचरा पड़ा है |

ये दृश्य एक अस्पताल का अंदर का किसी वार्ड का दृश्य है जहां पे तीन बेंच लगे हैं।

औरतें कपड़े धो रही है उनके साथ बच्चे भी उनकी मदद करवा रहे हैं।

जो की बहुत कम उम्र के हैं वो वहाँ पे बैठे हैं फ़ोन चला रहे हैं और उनके पीछे एक पिले रंग की एक ऑटो रिक्सा खड़ी है |